इस गेट पर काफी सारे लोग भी दिख रहे हैं।

ये ब्रिज कच्चा बना हुआ है।

ये गार्डन पूरी तरह से सूखा दिख रहा है।

और ये दिन का वक्त लग रहा हे।

ये चीज़ें काफी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं।

इस कमरे में एक ए_ल_सी_डी भी लगी हुई है।

ये घर काफी बड़ा दिख रहा है।

ये फोटो एक क्रॉसिंग ब्रिज की फोटो लग रही है।

ये फोटो एक नदी की लग रही है।

यहाँ पर कुछ जंगली पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ी सी वैन भी खड़ी हुई है।

जो कि केरला का बना हुआ है।

यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं।

इस कैफे में एक ए_सी भी लगा हुआ है।

ये शायद बारिश के मौसम की फोटो लग रही है।

यहाँ पर काफी सारे लोग भी नज़र आ रहे हैं।

ये फोटो किसी सुनसान इलाके का लग रहा है।

जहाँ पर एक छोटा सा घर भी बना हुआ है।

ये इलाका काफी ज्यादा घना और सुखा दिख रहा है।

जो कि काफी सारे गमलों के पीछे खड़ा हुआ है।

ये फोटो किसी घर के आंगन की लग रही है।

यहाँ पर काफी सारे लोग बैठकर नाश्ता भी कर रहे हैं।

ये फोटो एक पार्टी के डेकोरेशन के स्टेज की फोटो है।

यह किसी पार्टी का डेकोरेशन लग रहा है।

ये दुकान काफी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है।

एक मूर्ति में काफी सारी मूर्तियां बनी हुई हैं।

ये मूर्ति एक टेबल पर रखी हुई है।

यहाँ की फोटो रात की है।

ये स्टूडियो काफी बड़ा दिख रहा है।

टीचर वाइट बोर्ड पर लिख रही हैं।